यहां के कर्मचारी दिखाई दे रहे--

मुझे इस फोटो पर डिस्को लाइट दिखाई दे रही है।

ये घोड़े का पोस्टर दिखाइ दे रहा मुझे इस फोटो पर पन्ने भरके नमकीन--

मुझे इस फोटो पर बहोत सुंदर ग्राउंड दिखाई दे रहा--

मुझे इस फोटो पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।